ये आदमी जो है अ शर्ट पहने हुआ है ये बैठे कर जो है पत्थर पे कुछ कर रहा है बगल में बहुत सारे पत्थर रखे हुए है बगल में भी इसके पत्थर रखे हुए है ये आदमी उस पत्थरों पर बैठा हुआ है।